और जींस पेन रखी है और यहां पर एक लाल बोर्ड लगा रखा है और इसके अ अंदर कुछ व्यक्ति बैठ --

एक पेड़ लगा हुआ है और इसमें कुछ छोटे छोटे गमलो के--

दीवार बनी हुई है और यहां पर कुछ --

और यहां पर एक लोह का गेट लगाया हुआ है अंदर एक स्कूटी खड़ी हुई --

यहां पर एक मकान बना हुआ है।

और बाहर एक गेट लगा हुआ है लोहे का और--

और इसके फर्श में मार्बल लगाया हुआ है।

और सामने मंच लगाया हुआ है जिसपर एक नीले कलर का पर्दा डाला हुआ है।

टाइप बिल्डिंग बनी र हुई है और--